मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों संदेशों और कार्ड्स ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया है
मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा न हो या तिरंगे और आज़ादी से जुड़ी बात न हो
बच्चों ने युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदरसुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है
आज़ादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर हर गाँव में अमृत महोत्सव की अमृतधारा बह रही है
अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं
एक चेतना की अनुभूति हुई है
इतना बड़ा देश इतनी विविधताएं लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया
तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए
हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था
अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज़्बा देखने को मिल रहा है
हमारे सैनिकों ने ऊँचीऊँची पहाड़ की चोटियों पर देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया
लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलगअलग इनोवेटिव आईडीईएएस भी निकाले
जैसे युवा साथी कृशनील अनिल जी ने अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रेकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोजाइक आर्ट तैयार की है
कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लम्बा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया
असम में सरकारी कर्मियों ने दिघालीपुखुरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया
इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चैन के जरिए भारत का नक्शा बनाया
चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया
ये दोनों ही प्रयास गिनेस रेकॉर्ड में भी दर्ज किये गए हैं
इस सबके बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण भी देखने को मिला
यहाँ पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया
साथियो अमृत महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले
बोत्स्वाना में वहाँ के रहने वाले स्थानीय सिंगर्स ने भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए
इसमें और भी खास बात ये है कि ये 75 गीत हिन्दी पंजाबी गुजराती बांग्ला असमिया तमिल तेलुगू कन्नड़ा और संस्कृत जैसी भाषाओँ में गाये गए
इसी तरह नामीबिया में भारतनामीबिया के सांस्कृतिकपारंपरिक संबंधों पर विशेष स्टैम्प जारी किया है
साथियो मैं और एक ख़ुशी की बात बताना चाहता हूँ
अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला
वहाँ उन्होंने स्वराज दूरदर्शन के सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था
मुझे उसके प्रीमियर पर जाने का मौका मिला
ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायकनायिकाओं के प्रयासों से देश की युवापीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है
दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है
और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है
मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखेँ और अपने घर के बच्चों को भी जरुर दिखाएं और स्कूलकॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूलकॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आजादी के जन्म के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी
आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा
देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखनआयोजन आदि हम कर रहे थे हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे पूर्वजों की दीर्घदृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्मचिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं
हज़ारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद
ऋग्वेद में कहा गया है
अमृक्तम् धात तोकाय तनयाय शं यो
यूयं हिष्ठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री
अर्थात् हे जल आप मानवता के परम मित्र हैं
आप जीवनदायिनी हैं आप से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप से ही हमारी संतानों का हित होता है
आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं
आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं
सोचिए हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है
जब ये ज्ञान हम आज के सन्दर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है
आपको याद होगा मन की बात में ही चार महीने पहले मैंने अमृत सरोवर की बात की थी
उसके बाद अलगअलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा स्वयं सेवी संस्थाएं जुटीं और स्थानीय लोग जुटे देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जनआंदोलन बन गया है
जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो अपने कर्तव्यों का एहसास हो आने वाली पीढ़ीयों की चिंता हो तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है
मुझे तेलंगाना के वारंगल के एक शानदार प्रयास की जानकारी मिली है
यहाँ एक नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंग्त्यावाल्या थांडा
यह गाँव फॉरेस्ट एआरईए के करीब है
यहाँ के गाँव के पास ही एक ऐसा स्थान था जहाँ मानसून के दौरान काफी पानी इकट्ठा हो जाता था
गाँव वालों की पहल पर अब इस स्थान को अमृत सरोवर अभियान के तहत विकसित किया जा रहा है
इस बार मानसून के दौरान हुई बारिश में ये सरोवर पानी से लबालब भर गया है
मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ
ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इससे इस इलाके की सुन्दरता को और बढ़ा दिया है
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है
यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना ये सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है
सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है
सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊँचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूरदूर से लोग आ रहे हैं
अमृत सरोवर का ये अभियान कर्नाटका में भी जोरों पर चल रहा है
यहाँ के बागलकोट जिले के बिल्केरूर गाँव में लोगों ने बहुत सुंदर अमृत सरोवर बनाया है
दरअसल इस क्षेत्र में पहाड़ से निकले पानी की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी किसानों और उनकी फसलों को भी नुकसान पहुँचता था
अमृत सरोवर बनाने के लिए गाँव के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए
इससे इलाके में बाढ़ की समस्या भी दूर हो गई
अमृत सरोवर अभियान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है
इस अभियान के तहत कई जगहों पर पुराने जलाशयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है
अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेतीकिसानी के लिए भी हो रहा है
इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है
वहीँ इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है
इतना ही नहीं कई जगह लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं
मेरा आप सभी से और खास कर मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि आप अमृत सरोवर अभियान में बढ़चढ़कर के हिस्सा लें और जल संचय और जलसंरक्षण के इन प्रयासों को पूरी की पूरी ताकत दें उसको आगे बढ़ायें
मेरे प्यारे देशवासियो असम के बोंगाई गाँव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है प्रोजेक्ट सम्पूर्णा
इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है
इसके तहत किसी आंगनबाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की माँ एक कुपोषित बच्चे की माँ से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है
यानी एक माँ दूसरी माँ की मित्र बन उसकी मदद करती है उसे सीख देती है
इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है
आप कल्पना कर सकते हैं क्या कुपोषण दूर करने में गीतसंगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया
इसके तहत जिले में भजनकीर्तन आयोजित हुए जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया
एक मटका कार्यक्रम भी हुआ इसमें महिलाएँ आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बालभोज का आयोजन होता है
इससे आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है
कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है
झारखंड के गिरिडीह में सांपसीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है
खेलखेल में बच्चे अच्छी और ख़राब आदतों के बारे में सीखते हैं
साथियो कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसीलिये बता रहा हूँ क्योंकि हम सब को भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है
सितम्बर का महीना त्योहारों के साथसाथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है
हम हर साल 1 से 30 सितम्बर के बीच पोषण माह मनाते हैं
कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स इफोर्ट्स किए जा रहे हैं
टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जनभागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है
देश में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइसेज देने से लेकर आंगनबाड़ी सेवाओं की पहुँच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है
सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है
कुपोषण की समस्या का निराकरण इन कदमों तक ही सीमित नहीं है इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमिका है
उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन को ही लें तो भारत को कुपोषणमुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है
कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मैलन्यूट्रीशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरुर लें
मेरे प्यारे देशवासियो चेन्नई से श्रीदेवी वर्दराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर भेजा है
उन्होंने माइगोव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है नए साल के आने में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल यियर ओएफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा
उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट एमएपी भी भेजा है
साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चर्चा कर सकते हैं मुझे अपने देशवासियों में इस तरह के जज्बे को देखकर बहुत ही आनन्द की अनुभूति होती है
आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 दो हजार तेईस को इंटरनेशनल यियर ओएफ मिलेट्स घोषित किया है
आपको ये जानकर भी बहुत ख़ुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था
आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है
साथियो जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूँ तो मेरे एक प्रयास को भी आज आपको शेयर करना चाहता हूँ
पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेस बनवाऊं और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को यह डिशेस बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में मिलेट्स के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारियाँ एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं
मिलेट्स मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं
हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरू और तोल्काप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है
आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं आपको वहां लोगों के खानपान में अलगअलग तरह के मिलेट्स जरुर देखने को मिलेंगे
हमारी संस्कृति की ही तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएँ पाई जाती हैं
ज्वार बाजरा रागी सावां कंगनी चीना कोदो कुटकी कुट्टू ये सब मिलेट्स ही तो हैं
भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इसलिए इस पहल को सफ़ल बनाने की बड़ी ज़िम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है
हम सबको मिलकर इसे जनआंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है
और साथियो आप तो भली भांति जानते हैं मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद हैं और वो भी खास करके छोटे किसानों को
दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है
हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशेष रूप से लाभकारी है
मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है
आजकल युवापीढ़ी हेल्थी लाइविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस्ड है
इस हिसाब से भी देखेँ तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं
कई लोग तो इसे सुपर फूड भी बोलते हैं
मिलेट्स से एक नहीं अनेक लाभ हैं
ओबेसिटी को कम करने के साथ ही डायबीट्स हाइपरटेंशन और हर्ट रिलेटेड डिसीज के खतरे को भी कम करते हैं
इसके साथ ही ये पेट और लीवर की बीमारियों से बचाव में भी मददगार हैं
थोड़ी देर पहले ही हमने कुपोषण के बारे में बात की है
कुपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाभदायक हैं क्योंकि ये प्रोटीन के साथसाथ एनर्जी से भी भरे होते हैं
देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है
इससे जुड़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करने के साथ ही एफपीओएस को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके
मेरा अपने किसान भाईबहनों से यही आग्रह है कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अधिकसेअधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं
मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं
इनमें से कुछ मिलेट कुकीज बना रहे हैं तो कुछ मिलेट पन केक्स और डोसा भी बना रहे हैं
वहीँ कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं
मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूँ
त्योहारों के इस मौसम में हम लोग अधिकतर पकवानों में भी मिलेट्स का उपयोग करते हैं
आप अपने घरों में बने ऐसे पकवानों की तस्वीरे सोशल मीडिया पर जरुर शेयर करें ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिले
मेरे प्यारे देशवासियो अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोरसिंग गाँव की एक खबर देखी
ये खबर एक ऐसे बदलाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गाँव के लोगों को कई वर्षों से था
दरअसल जोरसिंग गाँव में इसी महीने स्वतन्त्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाएँ शुरू हो गई हैं
जैसे पहले कभी गाँव में बिजली पहुँचने पर लोग खुश होते थे अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुँचने पर होती है
अरुणाचल और नार्थ ईस्ट के दूरसुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है
जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वो डिजिटल इंडिया ने गाँवगाँव में पहुंचा दी हैं
इस वजह से देश में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं
राजस्थान के अजमेर जिले के सेठा सिंह रावत जी दर्जी ऑनलाइन एस्टोर चलाते हैं
आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ दर्जी ऑनलाइन दरअसल सेठा सिंह रावत कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे
कोविड आया तो रावत जी ने इस चुनौती को मुश्किल नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया
उन्होंने कॉमन सर्वाइस सेंटर यानी सीएससी एस्टोर जोइन किया और ओनलाइन कामकाज शुरू किया
उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्क का आर्डर दे रहे हैं
उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे
इसके बाद उन्होंने दर्जी ऑनलाइन नाम से अपना ओनलाइन स्टोर शुरू कर दिया जिसमें और भी कई तरह से कपड़े वो बनाकर बेचने लगे
आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सिंह जी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से आर्डर मिलते हैं
सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दे रखा है
डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी को भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना दिया है
उन्होंने अपने गांव में एक हजार से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित किए हैं
ओम प्रकाश जी ने अपने कॉमन सर्वाइस सेंटर के आसपास निशुल्क वाइफाई ज़ोन का भी निर्माण किया है जिससे जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद हो रही है
ओम प्रकाश जी का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख लिया है
ये लोग गांवो के स्कूल अस्पताल तहसील ऑफिस और आंगनवाडी केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा रहे हैं और इससे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं
कॉमन सर्वाइस सेंटर की तरह ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी गेम पोर्टल पर भी ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिल रही हैं
साथियो मुझे गावों से ऐसे कितने ही सन्देश मिलते हैं जो इंटरनेट की वजह से आए बदलावों को मुझसे साझा करते हैं
इंटरनेट ने हमारे युवा साथियों की पढ़ाई और सीखने के तरीकों को ही बदल दिया है
जैसे कि यूपी की गुड़िया सिंह जब उन्नाव के अमोइया गांव में अपनी ससुराल आई तो उन्हें अपनी पढाई की चिंता हुई
लेकिन भारतनेट ने उनकी इस चिंता का समाधान कर दिया
गुड़िया ने इंटरनेट के जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया
गांवगांव में ऐसे कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया अभियान से नयी शक्ति पा रहे हैं
आप मुझे गावों के डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में ज्यादासेज्यादा लिखकर भेजें और उनकी सक्सेस स्टोरीज को सोशल मीडिया पर भी जरूर साझा करें
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता रमेश जी का पत्र मिला
रमेश जी ने अपने पत्र में पहाड़ों की कई खूबियों का ज़िक्र किया है
उन्होंने लिखा कि पहाड़ों पर बस्तियाँ भले ही दूरदूर बसती हों लेकिन लोगों के दिल एकदूसरे के बहुत नजदीक होते हैं
वाकई पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं
पहाड़ों की जीवनशैली और संस्कृति से हमें पहला पाठ तो यही मिलता है कि हम परिस्थितियों के दबाव में ना आएं तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भर बन सकते हैं
जिस पहली सीख का जिक्र मैंने किया उसका एक सुन्दर चित्र इन दिनों स्पीती क्षेत्र में देखने को मिल रहा है
स्पीती एक जनजातीय क्षेत्र है
यहाँ इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है
पहाड़ी खेतों पर ये एक मेहनत भरा और मुश्किल काम होता है
लेकिन यहाँ गाँव की महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर एकदूसरे के खेतों से मटर तोड़ती हैं
इस काम के साथसाथ महिलाएं स्थानीय गीत छपरा माझी छपरा ये भी गाती हैं
यानी यहाँ आपसी सहयोग भी लोकपरंपरा का एक हिस्सा है
स्पीती में स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग का भी बेहतरीन उदाहरण मिलता है
स्पीती में किसान जो गाय पालते हैं उनके गोबर को सुखाकर बोरियों में भर लेते हैं
जब सर्दियाँ आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगह में जिसे यहाँ खूड़ कहते हैं उसमें बिछा दिया जाता है
बर्फबारी के बीच ये बोरियाँ गायों को ठंड से सुरक्षा देती हैं
सर्दियाँ जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है
यानी पशुओं के वास्ते से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी
खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी ज्यादा
इसीलिए तो ये क्षेत्र इन दिनों प्राकृतिक खेती के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है
साथियो इसी तरह के कई सराहनीय प्रयास हमारे एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं
उत्तराखंड में कई प्रकार के औषधि और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं
जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं
उन्हीं में से एक फल है बेडू
इसे हिमालयन फिग के नाम से भी जाना जाता है
इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं
लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है
इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस इससे बने जैम चटनी अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है
पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलगअलग रूपों में पहुँचाने में सफलता मिली है
बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ओनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है
इससे किसानों को आय का नया स्त्रोत तो मिला ही है साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूरदूर तक पहुँचने लगा है
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में आज शुरुआत में हमने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात की है
स्वतंत्रता दिवस के महान पर्व के साथसाथ आने वाले दिनों में और भी कई पर्व आने वाले हैं
अभी कुछ दिन बाद ही भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी है
गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के आशीर्वाद का पर्व
गणेश चतुर्थी के पहले ओणम का पर्व भी शुरू हो रहा है
विशेष रूप से केरला में ओणम शांति और समृद्धि की भावना के साथ मनाया जाएगा
30 अगस्त को हरतालिका तीज भी है
ओडिशा में 1 सितंबर को नुआखाई का पर्व भी मनाया जाएगा
नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना यानी ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी कृषि परंपरा से जुड़ा त्योहार है
इसी बीच जैन समाज का संवत्सरी पर्व भी होगा
हमारे ये सभी पर्व हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता के पर्याय हैं
मैं आप सभी को इन त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ
इन पर्वों के साथसाथ कल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जन्मजयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा
हमारे युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें यही हमारी ध्यानचंद जी के प्रति श्रद्दांजलि होगी
देश के लिए हम सभी मिलकर ऐसे ही काम करते रहें देश का मान बढ़ाते रहें इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ
अगले माह एक बार फिर आपसे मन की बात होगी
बहुतबहुत धन्यवाद